लड़की पहनी हुई है लेहंगा पेहने हुए है ब्लैक कलर के ब्लैक कलर के कुर्ती नजर आ रही है पर्दे दिख रहे है बलून दिख रहे है ग्रीन कलर के ऑरेंज कलर के वाइट --

दुकान दिख रही है दुकान में सामान दिखा रहा है वाइट कलर की एक चेयर दिख रही है सुट रखे हुए है।